इस फोटो मे मुझे रोड दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे लोहे की छड़ दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे साइकिले दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे महिला पुरुष दिखा--

इस फोटो में मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो मे मुझे नाव दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे पुरुष दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे एक गाड़ी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे मशीने दिखाई दे रही है।